यह मुसलमान का मस्जिद है यह बहुत सुंदर है इसमें बहुत सारा बच्चा सब है जो कि रहा है यह बहुत अच्छा लग रहा है यह सब निमाज पढ़ रहे हैं दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

थाली में रखा हुआ है थाली टेबल पर है ।

प्रकाश भी है ।